और यहाँ पर पेंटिंग में में भी भूच कर मूर्ती भी है यहाँ पर बहोत खुबसुरत लग रही है बगल में यहाँ पर हाथ जोड़े खड़ी है और यहाँ पर कुछ आदमी भी जा रहे है और आ रहे हैं।